सामने एक रास्ता बना हुआ है जिसके अगल-बगल बहुत सारी छोटी-छोटी घास है। रास्ते में मिट्टी डली हुई है और सामने एक एक बहुत बड़ी तलाब है जिसमें पानी भरा हुआ है।

और सामने बहुत बड़ा तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है। और तालाब के उस पार एक पहाड़ है। पहाड़ में हरे- भरे पेड़- पौधे दिख--

सामने उसके बगल में एक घर है जिसमें बहुत सारी सफ़ेद कलर की लाइट जल रही हैं और सामने एक छोटा-सा गेट बना हुआ है।

उसमे बहोत सारी खिड़किया लगी है और दरवाजे लगे हुए है और सभी खिड़की और दरवाजे मे लोहे की बनी हुई जालिया लगी हुई है और ऊपर बाले मंजिले में खिड़किया और दरवाजे भी लगे हैं और ए_सी का डब्बा लगा हे एक--

मकान है जिसमे भूरे कलर और सफेद कलर का पैंट हुआ है उसमे बहोत सारी खिड़किया लगी हुई है।

और बीच मे झंडे के लिए डंडा लगा हुआ है। जिसमे सफेद कलर का पेंट हुआ है उस मे --

जो कि हर भरे हैं और अगल-बगल बहोत सारी लाइटें जल रहीं हैं जो कि पीले कलर की जल रही हैं।

और उनके बीच-बीच में कुछ लाल-लाल के पौधे हैं जिनकी पत्तियाँ लाल-लाल हैं और कुछ घर दिख रहे हैं जिनमें खिड़कियाँ दिख रही --

घर है घर के सामने एक स्कूटी खड़ी हुई है जोकि काली कलर की है और बगल में कार है जोकि सफ़ेद कलर का कवर लगा हुआ है| उसके ऊपर से सामने एक दरवाजा है जोकि लड़की का बना हुआ है।

उसमें बहोत सारी खिड़कियाँ लगी हुई हैं खिड़कियाँ में काँच लगी हुई है और लोहे से बनी जालियां लगी हैं।